बड़ी सी नदी है तलाब है नदी जो अगल बगल कुछ मैदाने है जो मैदानों में हरे घास जमे हुए है।

और तो एक एक बैठा हुआ है जो आदमी खड़े हुए है और अगल बगल लाइट लगी है ऊपर पंखे लगे हुए है ए_सी भी लगी है।

आज सबसे ऊपर जो कांच लगा हुआ है नीचे भी नीचे भी लड़को का और उसके बगल में बच्चो का भी कपडा रखे हुए है।

ए एक एक मूवी देखने का क्लब है जिस क्लब में सामने बड़ा सा पर्दा टीवी लगा हुआ है।

और कुछ लोग आ रहे है और एक आदमी साइकिल चला रहे है अगल बगल हरे पेड़ भी है बादल सफ़ेद है।

होटल है होटल के सामने बड़ा स्टैन्ड लगा हुआ है जो कुछ लो लोग आ रहे है जा रहे है और जा रहे बगल से--

और रास्ता बना हुआ है आने जाने का और जो इस सामने एक--

एक अ धर्म स्तूप है जिधर स्तूप में लाल कलर दिवार में लाल कलर का पेंट पोता हुआ है बाउंड्री भी की हुई है।

जो पूरे सहर के नजारे दिख रहा है हर घर बने हुए है बिल्डिंग है और पानी काम टकर भी बना हुआ है।